कई सारी नाव दिखाई दे रही है और नाव पर काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे--

और सभी योगा करते हुए दिख रहे हैं।

ये कुछ लोग खाते हैं जो और कुछ लोग नहीं खाते जो भी नॉनवेज खाते हैं उसके लिए ये अच्छा है।